इस बगीचे में मुझे तरह तरह के फूल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

कांच के बड़े बड़े रैक बने हुए हैं जिसमें लड़कियों के कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा होटल का कमरा नजर आ रहा है।

तथा पलंग के सामने एक दीवाल पर बड़ी सी टी_वी भी लगी हुई नजर आ रही--

मुझे इस फोटो पर एक जिम मे लड़का खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

इस गार्डन में बहोत बडे बडे पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो पर एक डॉक्टर का क्लीनिक नजर आ रहा है।

जिसमें कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे है साथ ही एक बोर्ड भी खरि हुई है।

साथ ही फ्लोर के बाजू में बड़े बड़े डी_जे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।